इमारत के बाहर लोहे की जालियां दिखाई दे रही है जिनके अंदर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए दिख रहे है।

इस चित्र में एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसके पास बड़े - बड़े घने पेड़ दिखाई दे रहे है सामने कुछ छोटे पौधे भी नज़र आ रहे है।

इस चित्र मे एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसके किनारे एक रास्ता नजर आ रहा है।

हवाई जहाज के पीछे बड़े बड़े वृक्ष नजर आ रहे है सामने एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है चित्र मे कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

पीछे बड़े-बड़े घर भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कुछ टंकिया रखी हुई दिख रही हैं सामने एक पेड़ भी नज़र आ रहा हैं।

पीछे बड़े-बड़े पेड़ और छोटे पौधे भी नज़र आ रहे हैं सामने एक लोहे का खम्भा भी दिखाई दे रहा हैं।

मिट्टी भी नजर आ रही है सामने बड़े बड़े वृक्ष भी दिखाई दे रहे है पीछे दो व्यक्ति भी नजर आ रहे है।

इस चित्र मे एक घास का मैदान दिखाई दे रहा है जहा पर कुछ अक्षर लिखे हुए दिख रहे है।

इस चित्र मे एक जंगल नजर आ रहा हैं जहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा हैं।

रोड के ऊपर एक लोहे का खंभा दिखाई दे रहा हैं साथ में कुछ छोटे पौधे भी नज़र आ रहे हैं बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।